यहाँ पे एक पार्क है उसके हरे भरे पौधे भी है है डैनासोरे है।

यहाँ पे बहुत लगे हुए हैं बाकि चायपत्ती तोड़ रहें हैं।

प्लेन है हेलीकाप्टर है प्लाट है।

केवाड़ लगी हुई है खिड़की है।

यहाँ पे एक पुरा है। पुरे के नीचे पानी है। सामने के साइड में --

यहाँ पे एक मकान है। मकान के बाहर --